यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ी सी शॉप बनी दिखाई दे रही है।

खजूर का पेड़ खड़ा हुआ है।

यहाँ पर हम देख रहे कि एक प्लोट जैसा सामने दिखाई दे रहा है और उसके --

और एक उसके सामने मकान बना हुआ है जोकि बहुत ही सुन्दर उसके पीलर दिख --

जो कि प्लोट की बाउंड्री की गई है।

और रेड कलर की हेड लाइट है उसकी।

और इस पर एक सौ अस्सी लिखा हुआ है।

नीला कलर पैंट किया गया है। नीला व्हाइट --

हॉल में जो मैंदान जेसा दिखाई दे रहा है उसमे बहोत ही शुन्दर डिजाईन --